ऊपर की तरफ में लाइटिंग सिस्टम है और ये जो कि दो लड़कियां खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं और इसमें टेबल कुर्सियां लगी हुई हैं।

इस तस्वीर में मुझे बड़े-बड़े पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं जो की एक पार्क लग रहा है या स्कूल के पीछे का ग्राउंड लग रहा है। इसमें झूले लगे हुए हैं।

इस तस्वीर में मुझे बड़ा हॉल दिखाई दे रहा है जिसके अंदर ये कुर्सियां लगी हुई हैं और ये देखें तो--

इस तस्वीर में मैं देख पा रहा हूं कि मुझे दो बड़े बड़े दो डिब्बे--

एक बड़ी ही लंबी लाइट लगी हुई है जोकि सारे को रोशनी दे रही है और बड़ी बड़ी ई मंजिल इमारतें दिखाई दे रही है जिनमें लाइट है।

बड़ा ही जोकि है जरा इसमें गणेश जी भी लगे हुए हैं और ये एक अद्भुत नजारा दिखाई दे रहा है और इस वाइट कलर का है लग रहा --

इस तस्वीर में मुझे एक बड़ा हॉल दिखाई दे रहा है जिसमें उत्तर की तरफ में ये पुरानी डिजाइन की बहुत अच्छी दिखाई दे रहा लाइट दिखाई दे रही है और नीचे की तरफ में --

इस तस्वीर में मैं देख पा रहा हूं ये एक दोपहर का समय है जिसमें बादल छाए हुए हैं ये रेलवे स्टेशन लग रहा है और रेल की पटरियां हैं।

इस तस्वीर में मुझे पुराने ते पुराना जो महल दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत बड़ी बड़ी बड़ी सीढ़ियां लगी हुई हैं इसमें एक --

वाशिंग मशीन दिखाई दे रही हैं और उसके छोटे-छोटे कुछ पार्ट्स भी दिखाई दे रहे हैं जो की बाडियों मे पैक्ड लग रहे हैं एक कुर्सी भी दिखाई दे रही है और पीछे की तरफ एक बोर्ड लगा हुआ है।

अलग प्रकार के चित्र लगाए गए हैं कूलर लगाए गए हैं और इसमें लाइटिंग सिस्टम किया गया है।

इस तस्वीर में मैं देख पा रहा हूं कि पीछे की तरफ ने मुझे ये बाजार की दुकानें दिखाई दे रही हैं जिसमें बाहर की तरफ में समान--

इस तस्वीर में मैं देख पा रहा हूं ये मुझे सब्जी का मार्केट लग रहा है पीछे की तरफ में बड़ी बड़ी दुकाने भी दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में मुझे कृष्ण भगवान की प्रतिमा ज्योति दिखाई दे रही है ऊपर की तरफ अपनी फोटो लगी हुई है पीछे की तरफ में मुझे छोटे छोटे --